ये सीढ़ियों पर खड़ा है और आ रहा है। कुछ लोग आ रहे उसे बचाने के लिए। ये पानी को देखते ही जा रहा है। देखते ही --

काफी अच्छे तरीके से यह टाइल्स लगा रहा है अच्छा आदमी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है बढ़ियाँ है।

ये देखिए ये यहाँ पर चाय बनाता हूआ एक लड़का है जोकि चाय बना रहा है जोकि करीबन सत्रह अठरह साल का है। ये देखिए यहाँ पर बहोत सारा समान है चाय का और इसने इसकी शॉप को इतने अच्छे से सजा के रखा है।